आदमियों की शकल नहीं दिखाई दे रही मगर खरगोश दिखाई दे रहा है।

यहाँ से रस्ता भी है यहाँ पेड़े भी लगे हुए हैं।

अच्छा मस्त पारक बना हुआ है कुछ पेड़े भी दिखाई दे रहे हैं कुछ--

और ये भी देख रहा हूं कि लाइटे ल--

दुकान हैं जिम्बाली करते हुए हैं।

मैं यहां देख पा रहा हूं की बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर--

लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है ये लगता है फैक्ट्री है।

यहां मैं कुछ देख पा रहा हूं कि कोई आदमी बैठे हुए हैं।

कुछ यहां काम चल रहा है कुछ टाइल्स भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।